ये एक नहाने का स्विमिंग पूल है जोकि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर पानी रहा है और लोहे से बने हुए पाइप का एक --

और पानी के अंदर दो तीन पिलर भी खड़े हुए हैं जिसके ऊपर से पानी आ रहा है और हा आस-पास में खड़े हुए हरे पेड़-पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं।

ये एक तिरंगा झंडा है जोकि तीन कलर का है।

यह एक कॉलेज है जो की भारतीया ग्रुप ऑफ लिखा हुआ है। और पास मे दो तीन बाइक भी खड़ी हुई है।